यह एक पार्क की तस्वीर है जहा पर बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इसे एक आदमी अपने सेफ्टी के लिए खिला रहा है। बच्चे के सेफ्टी के लिए खिला रहा है।

यह एक कोई प्रोग्रामे की तस्वीर है जहां पर बच्चे को एवार्ड दिया गया है और उसे कुर्सी पर बैठा कर फोटो खींचा गया हैं। उसके पीछे--

एक खिड़की लगी हुई है और ऊपर में घड़ी भी है। और कोने पे फूल भी है और कई प्रकार की मशीन ---

यहाँ पर बहुत से आदमी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमे उन्होंने एक पैर उठा ली हैऔर एक पैर को जमींन पे रख के योग कर रहे हैं। बहुत सारी औरतें भी है।

ये एक पार्क में फवारा की फोटो ली गयी है जो काफी खुबसूरत है। इसमें लाल कलर की गई है। इसके बगल में एक पुल की बड़ी सी सीन नजर आ रही है।

ये एक पार्क की रोड है जिसके दोनों तरफ बहुत ही सुन्दर सुन्दर फुल लगे हुए हैं और बहुत बड़े-बड़े वृक्ष भी हैं। काफी हरे-हरे वृक्ष लगे हुए हैं।